वहीं पे साइड में हमें रोड पे बालू देखने को मिल रहे हैं वहीं पे हमें एक टावर देखने को मिल रहा है।

कुर्सी देखने को मिल रहा है रोड के इस तरफ हमें बहुत सारे स्ट्रीट लैंप देखने को मिल रहे हैं।

हमें यहां पे बहोत सारे नट बोल्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके नीचे हमें लोहे के टाइप का बड़ा सा--

हमे इस रूम के अंदर एक हायर देखने को मिल रहा है उपर मे हमे बहोत सारे लाइट लगे हुए देखने को मिल रहा है।

ऊपर में पीछे में घर पे हमें बोहोत सारे ए सी लगे हुए --

हमें यहां पे ब्रांडा देखने को मिल रहा है ब्रांडे के ऊपर हमें एक इलेक्ट्रिसिटी वाले पाइप देखने को मिल रहा है।

साइड में हमें एक मोड़ देखने को मिल रहा है वहीं पे हमें एक जग देखने को मिल रहा है।

हमे यहां पे दुकान के अंदर का फोटो देखने को मिल रहा हैं यहां पे हमें एक फ्रिज देखने को मिल रहा हैं।

फ्रिज के ऊपर एक स्टिंग रखा हुआ है वहीं पे हॉर्लिक्स रखा हुआ है स वहीं पे वाटर बोतल रखा हुआ है।

गार्डेन के साइड में हमें बहोत सारे हमें फूल लगे हुए देखने को मिल रहे हैं।

गार्डन माली है जो कि हमें घास काटते न नज़र आ रहा है उसके ही साइड बहुत बड़े-बड़े पेड़ जमे हुए--

पेड़ का फोटो देखने को मिल रहा है। वहीं पे साइड में बहोत अच्छे अच्छे लाइटिंग लगे हुआ हैं यहां।

कुर्सी के ऊपर हमें पिंक कलर का उसे पर कपड़ा से उसे झांपा हुआ वो देखने से मिल रहा है वहीं पे हमें अंदर में --